जैसा की इस तस्वीर मैं देखा जा रहा हैं ये एक बिल्डिंग हैं बिल्डिंग का कलर व्हाइट हैं जिसमे तीन-चार खिड़किया दिख रही हैं कांच हैं वह नीला कलर का दिख रहा हैं बीच मैं एक हॉल दिख रहा हैं जो ब्लैक कलर का दिख रहा हैं।

रेड कलर की कार है व्हाइट कलर की कार है ब्लैक कलर की कार है उसके बीच मे गार्डन के बीच मे बहुत सारे लोग है जिस ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है| दो जनों ने व्हाइट कलर की टी-शर्ट --

इस तस्वीर मे देखा जा रहा हैं की ये फल फ्रूट की एक दुकान हैं दुकान में बहुत सारे फल फ्रूट हैं।

जैसा की इस चित्र मैं देखा जा रहा हैं यह एक लाइब्रेरी की तस्वीर हैं जिसमे बहुत सारी टेब्ले लगी हुई हैं।

ये इस तस्वीर मे देखा जा रहा है की किसी नमकीन और मिठाई की दुकान की तस्वीर है जो कांच के एक उसके बॉक्स मे बहुत सारी मिठाईया रखी हुई हैं बहुत सारे रखे हुए है बहुत सारे नमकीन रखे हुवे हैं।

उसके हाथ मे पाइप है उस पाइप मे से पानी आ रहा है वो पानी वो घासो और पौधों को दे रहा है। जो घासे वो आधी थोड़ी आधी ही है आधी घास--

ऑटो के पास तीन लोग खड़े हुए हैं दूसरे रोड पे बाइक खड़ी हुई हैं बाइक के पास भी दो लोग खड़े हैं एक दो एक बाइक हैं जिसमे दो आदमी बेठ के जा रहे हैंउसमे से एक ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है यह ऊपर जो पंप का कलर ब्लू और वाइट हैं।

जैसा की इस फोटो मैं दिख रहा हैं यह एक रोड हैं रोड आगे जो एक तस्वीर हैं जो बिल्डिंग की हैं होटल की तस्वीर हैं यह जो बिल्डिंग हैं वो अ बहोत खूबसूरत दिख रही हैं बिल्डिंग के आगे एक कार पड़ी हुई हैं जो बिल्डिंग हैं उसमे एक दरवाजा दिख रहा हैं।

ता की इस तस्वीर मैं देखा जा रहा हैं यह ए कपडे की शॉप हैं कपडे की शॉप की जो बोर्ड हैं वो पीला कलर का उसमे रेड कलर के बोर्ड के अंदर व्हाइट कलर के अक्षरो मैं दुकान का नाम लिखा हुआ हैं और यहाँ पे बोहोत सारे कपडे बाहर टंगे हुए हैं जिसमे लेडीज कपडे हैं।